यहाँ पर एक अ आदमी बैठा हुआ है और कुछ लोग खड़े हुए है एक आदमी मछलियाँ देख रहा हैं।

और तराजु रखा हुआ है एक पीले कलर का डिब्बा रखा हुआ है उसमें भी मछलिया रखी हुई है जमीन में ऑरेंज कलर की पन्नी बिछी हुई है।

और यहाँ पे रेड कलर वाइट कलर ग्रीन कलर के बैलून्स लगे हुए है एक आदमी माइक लिए खड़ा हुआ है।

लगा हुआ है जो की पिंक और वाइट कलर का है और गुब्बारे लगे है जो कि ऑरेज येल-और व्हाइट और ग्रीन कलर के है और कुर्सी रखी --